गड़तंत्र द्वार के अंदर एक स्टेज बना है उसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

और वहां पर बहोत सारी स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

और पेट्रोल पंप के साथ एक सड़क दिख रही है वहां पर बहोत सारे स्ट्रीट लाइटें लगी हैं।

और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दे रही है वहां पर बहोत सारी ज्वेलरी रखी हुई है एक बोर्ड शीशा दिखाई दे रहा है।

मुझे कुछ दुकान भी दिखाईं दे रही हैं।

बाबा बालक नाथ जी की मूर्ति भी मंदिर के ऊपर बनी है और वहां पर एक झंडा लगा हुआ है।

कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

और कुछ महिलाएं और एक आदमी दिख रहा हैं वहां पर पूजा का सामान रखा गया हैं।

पल्यूशन चेक पोस्ट भी दिख रहा है वहां पर हेरमेट पानी की बोतल पड़ी है।

और दीवार के ऊपर बहुत ही सुंदर शो पीस लगा रखा है।

कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं।

और तार के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं।

और एक दीवार वाली घड़ी दीवार वाला पंखा दिख रहा है।

एक हॉल दिख रहा है हॉल में बहुत सारे कुर्सीयां टेबल लगे है टेबल के ऊपर टिशू पेपर बॉटल्स और एक गिलाश पड़ा है।

ए_सी लगे है बिल्डिंग का रंग लाल है।

कुछ गोती गमले भी दिख रही है। ए_टी_एम भी दिख रहा हैं।